एक अ यंत्र है स्कैनर है एक लड़का अपनी फोटो खींच रहा है।

बहुत सारी पेंटिंग्स इस पे बनाई हुई है।

नीले रंग की दीवारें हैं कुर्सी है।

ये कीड़े अक्सर सफेद रंग के और बहोत ही ज्यादा जहरीले होते हैं।

एक मेज के ऊपर रखे हुए हैं लिली लिखा हुआ है।

गार्ड्स पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल डल रहा है एक बाइक --